यहां पे ब्राउन रंग का बेंच लगा हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो कुछ लिख रहे हैं।

साइड में एक रैक है जो जिसकी ड्राइवर बंद है।

जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है।

यह दृश्य कोचिंग का है जिसकी बेंच सफेद रंग की है।

यह दृश्य एक फूल के दुकान का है जिसमें बोडी में बहोत सारा फुल रखा हुआ है ।

यहां एक व्यक्ति खड़ा है जो की पीले रंग का टी_शर्ट पहना हुआ है और ब्लू रंग का लुंगी पहने हुआ है उसके आगे भी कुछ लोग हैं।

यह दृश्य एक सैलून का है जहां पर एक व्यक्ति एक बच्चा का बाल काट रहा है।

वो बच्चा को उसने ब्लू रंग का कपड़ा पहनाया है जिसपर बाल गिरा हुआ है ।

यहां पे कुछ टेंट लगा हुआ है जो की सफेद रंग का है।

इसके पीछे एक मॉल भी है जहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पी_वी_आर शॉपर्स स्टॉप --

बगल पे तार भी टंगी हुई है जो कि हरे रंग की है ।

उसके पीछे एक रूम है जिसके बाहर कुछ सर्टिफिकेट लगी हुई है और एक घड़ी लगा हुआ है।

यह दृश्य एक आइसक्रीम के शो रूम के बाहर का है।

यह दृश्य एक पंडाल का है ।

जहाँ पे बहोत सारे गुब्बारे से सजावट की हुई है जो की ऑरेंज हरा और सफेद रंग का है।

एक व्यक्ति अपने ऊपर साल लपेट कर बैठा हुआ है।

इस के बगल पे दो शो प्लांट्स लगी हुई है।

मस्जिद के अंदर से लाइट जल रहा है और इसके पीछे पीछे और बगल में कुछ घर भी है ।

यहां पे बोर्ड लगा हुआ है रोलेक्स और इसकी गेट भी कांच की है।

यह दृश्य एक मकान की है जिसके बाहर बहोत सारा पोस्टर लगा हुआ है।

अगल बगल पे कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

वो सफेद रंग के काले रंग के है और भी अलग अलग रंग के है।